बहोत सारे बच्चे बास्केटबॉल खेलते हुए नजर आ--

स्टेशन की पटरियां रेल की पटरी नजर आ रही है।

इस ईमेज में बहुत सारे बुलेट खड़ी हुई दिखाई दे रही है सोफे लगे हुए दिख रहे हैं हेलमेट लगे हुए नजर आ रहे हैं।

कुछ लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं एक टेबल दिखाई दे रही है।

इस इमेज मे एक स्वीट्स पार्लर नजर आ रहा है।

एक आदमी का हाथ नजर आ रहा है उन उसके हाथ में एक फूल दिखाई दे रहा है नीचे पत्ते पड़े हुए नजर आ रहे हैं।

ये दुकान के अंदर सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में एक क्लास रूम खुला हुआ नजर आ रहा--

पंखे लगे हुए दिख रहे हैं कुछ पोस्टर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

है पीछे पंखा लगा हुआ दिख रहा है गो एक बल्ब लगा हुआ दिखाई दे रहा है कुछ लोग नज़र आ रहे हैं।

तार दिखाई दे रहे हैं बल्ब के खंभे लगे हुए नजर आ रहे--

इस इमेज में एक महल बना हुआ नजर आ रहा महल द्वारा बजोत सारे खिड़की लगी हुई दिखाई दे रही है दरवाजे नजर आ रहे है।

नजर आ रही अंदर एक आदमी नजर आ रहा--

ये सब सामान टूटा-फूटा दिखाई दे रहा है बाहर पेंटर सर्विस लिखा हुआ दिखाई दे रहा --

सामने एक बैनर लगा हुआ दिख रहा है साइड रेड कलर की कुर्सी दिख रही है दो लड़कियां फोटो खिंचवाते हुए नजर आ रही हैं।

कुछ लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे बाहर दो पानी के आजन रखे हुए नजर आ रहे हैं चीज की थैलियां टंगी हुई नजर आ रही है।

ये इमेज मांडव की नजर आ रही है।

हरी हरी घासें दिखाई दे रही हैं पहाड़ी नजर आ रही है।

ऊं आसमान मे बादल छाये हुए दिखाई दे रहे है बहोत खूबसूरत नजारा नजर आ रहा है।

साइड में कुछ मट्टी पड़ी हुई दिखाई दे रही है हरी हरी घास नजर आ रही है पीछे एक घर बना हुआ दिखाई दे रहा है।

अंदर कैमरा लगा हुआ नजर आ रहा है।

कुछ सब्जियां रखी हुई दिखाई दे रही है।

कच्ची जमीन नजर आ रही है गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दे रही है पेड़ खड़े हुए पेड़ नजर आ रहे हैं।

सामने एक कंप्यूटर लगा हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें सी_सी_टी_वी कैमरे से सब--